ये एक दुकान है जिसमें बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

और साथ में एक गेट दिखाई दे रहा है और उसे पर क्रॉस का निशान बना हुआ है।

यहां पर एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

उस ने एक डिब्बा पकड़ा हुआ है।

पत्तो की पिक्चर्स भी बनी हुई है।

और पास में एक ईंटों का घर भी है।

एक पर विद्या इंस्टिट्यूट लिखा हुआ है।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

ये एक गुरुद्वारा है यहां पर आसपास लोग खड़े है।

और पास में बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

और बहुत सारे नमकीन के पैकिट भी दिखाई दे रहे हैं।

बंदों की फोटो बनी हुई है।